मुझे लगता है कि यह दुकान बहुत ही प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का है।

यहां पर बहुत सारे लोग ग्राउंड में खड़े नजर आ रहे हैं।

मुझे लगता है की यहाँ से जो भी है वो नेचर जो है वह बहोत ही अच्छा और बहोत ही क्लियर दिखाई दे रहा है।

जो कि हमारे आम जीवन में बहोत ही उपयोगी और बहोत ही महत्वपूर्ण है।

मुझे लगता है कि यहां पर सभी प्रकार की चीजें मिलती होगी।

यह दृश्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत ही अच्छी हरियाली नजर आ रही है मुझे लग--

यहां पर एक जिम है जहां एक लड़का सेल्फी ले रहा है और--

जो काफी सुंदर और काफी अच्छी दिखाई दे रही है।

और कुछ मशीनें रखी गयी है जो काफी सुंदर है।

इससे पानी के समय में इसके अंदर का सामान बच जाता होगा।

यहां पर सीढ़ियां दिखाई गई है जो की ट्रेन के स आसपास हो।

क्योंकि इससे लोग ट्रेन की पटरी पे ना चढ़ के उसके ऊपर से जा सकते हैं।

यहां पर मुझे काफी सुंदर और बेहद अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है।